जिस पर रेड अ ऑरेंज और पीले कलर की अह पेंट है।

कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे --

सामने एक एल_सी_डी है उसके बगल में घड़ी और बगल में एक हरा कलर की तिरपाल दिया हुआ है।

बहुत सारे कुर्सियां हैं लाइट लाइट है और बहुत सारे व्यक्ति है सामने स्टेज भी दिखाई दे रहा है।

सामने दीवाल क्ली क्रीम कलर की पेंट --

यह किसी थाना का चित्र दिखाई दे रहा है।

कई तरह के मछलियां भी दिखाई दे रही है और जमीन पर भी मछलियां पड़े हुए--

मैदान पर गाड़ी एवं कार लगे हुए दिख रहे हैं।

यह एक टिशन के किलास की दृश्य दिखाई दे रही है।

ऊपर लाइट भी लगी हुई है।

नीचे टाइल्स लगी हुई है।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

सामने एक कांच का एक टेबल भी दिखाई दे रहा।